इस पिक्चर में हमें अअ एक पेड़ दिखने मिल रहा है जिसमे यल्लो कलर का फ्लैग है साइड में काफी--

इस पिक्चर में हमें एक बॉल देखने मिल रही है सामने एक छोटी-सी लैक है।

इसमें हमें एक शॉप देखने मिल रही है जिसमें आम तरबूज--

इसमें हमें एक जिम दिखाया गया है जिसमें एक आदमी फूल लैप्स कर रहा है साइड में एक बॉक्सिंग --

काफी सारे स्टूडेंट अपने पढ़ाई कर रहै हैं।

पीछे की साइड और इसमें एक आदमी खड़ा है जिसने है न सूट पेंट टाइ पहने हुए हैं।

इस पिक्चर में हमें स्टेट इंस्टिट्यूट हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का--

कार खड़ी हुई है स्कूटी खड़ी हुई है और इसमें काफी सारी ड्रेस देखने के लिए मिल रहा है लहंगा साड़ी और बच्चों के कपड़े हैं फ्रॉक --

इस पिक्चर में हमें एक खेत देखने मिल रहा है जिसमें --

इसमें हमे एक बैंक देखने मिल को रहा है जिसमें काफी सारे लोग खड़े हुए हैं आइड साइड बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है एक महिला भी दिख रही है जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई हैं।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

लक्ष्मी स्टोर स्टेशनरी पुस्तकेशादी--

इस पिक्चर में हमें अअअ एक माउंटेन एरिया दिखाया गया है जिसमें--

जो ब्लू कलर का है उसके ऊपर नंबर एक दर्ज है।

एक वाटर कूलर लगा हुआ है उसके साइड में काफी सारे नल लगे हुए हैं सामने एक वाइट कलर का डोर है।

इस पिक्चर में एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें एक मेडिकल और एक हाईटेक का एटीएम है।

एक खाली प्लेस में तीन बसे खड़ी हुई है उसके सामने एक बिल्डिंग है उसके साइड में काफी टावर्स भी है।

इस में रिवर देखने मिल रही है जिस के किनारे पर बहोत सारी नाव रखी हुई है वहाँ कुछ उल्टी रखे हुए सीधी रखी हुई है।